और पिल्लो सब भी बहुत सुंदर रखे हुए हैं और इस पर बेडशीट रेड कलर और वाइट कलर का बिछाया गया और बगल में बहुत सारे चार्जिंग प्लग है।

इसमें कुछ ही काम हुए हैं और इसकी कलर पूरा येलो कलर में है नीचे कार्पेट है।

हुई हैं और दोनों ने पैंट मोड़ रखा है क्योंकि पानी से कपड़े भीग जाएंगे और--

ये जो है सेक छोटा सा दुकान है जिस पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं और मिठाई उठाई भी अलग अलग --

कोइ दिन होगा या ये दोपहर की फोटो होगी।

कोचिंग क्लास चला जाती है बी_ओ_जी_यू नवोदय --

यह जो है सो एक मशीन सेंटर है जहां पे--

क्योंकि ये गैस सिलेंडर का दुकान है वहाँ पे गैस सिलेंडर ही मिलती है और भराती है।

यह जो है सो एक गली गया है जहाँ पे मुल्ला लोग जा रहा है और यहाँ पे कुछ आंटी जी से भी जा रही है सामने एक मेडिकल स्टोर है जिसका नाम श्रीमाता --

और फील्ड के साइड में लिखा हुआ है महात्मा गाँधी डेंटल यूनिवर्सिटी बिहार --

ये एक बिहार की यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ही छोटी सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बच्चे बी_टेक ए करने आते हैं डिप्लोमा कर --

ये जो है सो एक बिल्डिंग हैं जो किसी सरकारी आवास का लग रहा हैं जहाँ पर बहुत सारे पुलिस हैं ।

और यहाँ पे लोग को बहुत मज़ा आ रहा हैं क्योंकि ये झरना बहुत ही सुंदर ऊपर से गिर रहा है नीचे की ओर।

क्योंकि उसे तो ठीक करवाना ही होगा मेरा बच्चा कुछ दिन पहले खुद बीमार था वो अब ठीक हो गया है जय महाकाल। --

ये जो हैं इसमें शादी का मंडप सजाया हुआ है जहाँ पे--

वर वधु को बैठने का जगह दिया गया है और यहाँ पे कोई भी लोग नहीं हैं पीछे गोल्डन कलर का--

लग रहा है और यहाँ पे ए रेड कलर का लगाया हुआ है जहाँ पे लोग बैठ--

यहाँ पे वो लोग कैंडल जलाया हुआ है दीप दीप जला ही नहीं सकता और यहाँ सबको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है।

ये जो है सो एक घर का है जो दिवाली के समय बहुत ही सुंदर तरीके से अलग-अलग कलर के--

रंगों की लाइट से सजाया गया है जिसमें पिंक कलर ऑरेंज कलर ग्रीन कलर --